होटल --

आप जा सकते हैं। जाके देख सकते हैं।

औरतें सब हैं और जेन्स भी होंगे।

देखिए ये जयमाल का इस्टेज --

देखिये ये जगह कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें ह हिरण भी हैं जो घास खा रहे हैं और एकदम जंगल-जंगल सा है।

द्वार पे सेवा करते हैं। सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है। जो सेवा करता है उसके घर कष्ट कभी नहीं आता है।

ये जगह देखिये कैसे पेड़ लम्बा-लम्बा सा है और यहाँ पे काम चालू हो गया है घर बनने के लिए --

पहरदारी किरी करिये --

और कुछ नया कितने अच्छे से पानी गिर रहा है। सफेद भी है और हरा कलर का भी पानी दिख रहा है। देखने में काफी सुन्दर लग --

कुर्सी भी है। कुछ सामानें और भी हैं। औजार है। देखने में काफी सुन्दर लग रहा है।

ये देखिये कितना अच्छा अमरुद है।